लिबरऑफिस राइटर के कई कॉलम्स में सूचना पत्र बनाने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस राइटर में सूचना पत्रों को कैसे बनाएँ और कुछ कार्य जो उन पर कर सकते हैं कैसे करें
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में GNUलिनक्स और लिबर ऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
सूचना पत्र एक प्रकाशन की तरह उपयोगित है जिसे उनके ग्राहकों को समय के नियमित अन्तराल पर प्रचारित किया जाता है
उदाहरणस्वरुप नियतकालिक पत्रिका प्रचार पुस्तिका और बहुत कुछ
इसमें भागों के रूप में कई कॉलम्स होते हैं और इन भागों में विभिन्न लेखों पर जाना पाठक के लिए सरल बनाता है
लिबर ऑफिस राइटर का इस्तेमाल करके कोई भी सूचना पत्र बना सकता है जो लेखों का पढना काफी सरल और तेज़ बनाता है
फाइल न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके एक नया टेक्स्ट डॉक्युमेंट खोलते हैं
इस डॉक्युमेंट को न्यूजलेटर फाइल नाम से सेव करें
अतः हमारे पास न्यूजलेटर नामक नया टेक्स्ट डॉक्युमेंट है
अब अपने डॉक्युमेंट में कॉलम्स प्रविष्ट करें
यह करने के लिए पहले मेन्यू बार में फॉर्मेट बटन पर क्लिक करें और फिर कोलम्न्स पर क्लिक करें
विभिन्न ऑप्शन्स के साथ एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
जितने कॉलम्स आपको चाहिए वह चुनें इन कॉलम्स की विड्थ एंड स्पेसिंग निर्धारित करते हैं
साथ ही सेपरेटर लाइन विभाजक रेखा की विभिन्न विशेषतायें निर्धारित करते हैं
हम कॉलम फील्ड की वैल्यू 2 बढ़ाकर सूचना पत्र डॉक्युमेंट के लिए दो कॉलम्स चुनेंगे
कॉलम फील्ड के बगल में पाँच आइकन्स आपको विभिन्न उपलब्ध प्रारूपों का प्रिव्यू दिखाते हैं
अतः दूसरे प्रारूप पर क्लिक करें
बाकी अन्य वैल्यूस जो कॉलम्स की विशेषता परिभाषित करते हैं उन्हें डीफॉल्ट रखते हैं
और ओक बटन पर क्लिक करें
आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट क्षेत्र में 2 कॉलम्स प्रदर्शित होते हैं
अपने पहले कॉलम में एक लेख लिखते हैं
हम मोटे अक्षरों में फॉन्ट साइज़ 15 के साथ इसका शीर्षक नेचर देंगे
और इसके नीचे हम इसपर एक लेख लिखेंगे
आप देखते हैं कि पहले कॉलम के अंत पर पहुँचने के बाद कर्सर स्वतः ही अगले कॉलम में चला जाता है
आप इस कॉलम में चित्र भी प्रविष्ट कर सकते हैं और उसका साइज फिर से बदल सकते हैं जिससे कि वह कॉलम में सही बैठ जाए
अब कुछ स्पेसेस छोड़ने के बाद आप कॉलम में एक और लेख लिख सकते हैं
अतः हम पहले मोटे अक्षरों में फॉन्ट साइज़ 15 के साथ इसे एक शीर्षक स्पोर्ट्स देंगे और इसके नीचे हम इसपर एक लेख लिखेंगे
अतः आप देखते हैं कॉलम्स इसे पाठक के लिए कई लेखों पर जाने के लिए सरल बना देता है
कुछ वाक्यों को मिटा देते हैं जिससे कि हमारा लेख पहले कॉलम में ही बैठ जाए
फिर आगे के कॉलम्स तक पहुँचने के लिए इंसर्ट बटन पर क्लिक करें और फिर मैनुअल ब्रेक पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो दिखता है उसमें कोलम्न ब्रेक बटन पर क्लिक करें और फिर ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि कर्सर अगले कॉलम में स्वतः ही आ जाता है
अतः आप इस कॉलम में एक और लेख लिखना शुरू कर सकते हैं
सभी संरूपणफार्मेटिंग ऑप्शन्स जैसे अलिग्न लेफ्ट अलिग्न राइट टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर जोड़ना टेक्स्ट को हाइलाइट करना और कई सारी विशेषताएँ
टेक्स्ट को आकर्षक बनाने के लिए उसमें जोड़ी जा सकती हैं
उदाहरणस्वरूप हम टेक्स्ट के भाग को चुनते हैं जिसमें हम पृष्ठभूमी रंगबैकग्राउंड कलर लागू करना चाहते हैं
अब टूलबार में बैकग्राउंड कलर आइकन पर क्लिक करें और फिर ग्रीन 4 क्लिक करें
हम देखते हैं कि चुनित टेक्स्ट का पृष्ठभूमि रंग हल्के हरे में बदल गया है
इस प्रकार से आप टेक्स्ट के विभिन्न भागों को विभिन्न पृष्ठभूमी रंग दे सकते हैं
यहाँ तक कि आप ड्राइंग टूलबार में टेक्स्ट ऑप्शन पर पहला क्लिक करके सूचना पत्र में बैनर भी जोड़ सकते हैं
आप डॉक्युमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी रखें जहाँ लिखित टेक्स्ट न हो
टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जोकि बैनर या विज्ञापन की तरह कार्य करेगा
अतः कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं जैसे थिस इस आ न्यूजलेटर
आप इस टेक्स्ट में इफेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं
उदाहरणस्वरूप पहले टेक्स्ट पर दायाँ क्लिक करें और फिर मेन्यू में टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जिसमें टेक्स्ट और टेक्स्ट एनिमेशन नामक टैब्स हैं
टेक्स्ट एनिमेशन टैब पर क्लिक करें
इस टैब के इफेक्ट्स फील्ड में कई सारे ऑप्शन्स हैं
सूचना पत्र में टेक्स्ट को जगमगाने के लिए हम ब्लिंक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
और अंततः ओक बटन पर क्लिक करें
हम देखते हैं कि टेक्स्ट थिस इस आ न्यूजलेटर डॉक्युमेंट निरंतर जगमगा रहा है
उसी प्रकार से टेक्स्ट पर ऐसे ही विभिन्न चित्रालेख और इफेक्ट्स दिये जा सकते हैं
अब अगले पृष्ठ पर नया लेख लिखने के लिए आपको पहले इंसर्ट बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता है
और फिर मैनुअल ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करें
डायलॉग बॉक्स जो प्रदर्शित होता है उसमें पेज ब्रेक बटन पर क्लिक करें
और अंततः ओक बटन पर क्लिक करें
आप देखते हैं कि कर्सर अगले पेज पर आ जाता है
इस पेज में वही कॉलम प्रारूप है जैसा पिछले पेज में था
अपने लेख में शब्द गिनती को रखने के लिए पहले अपने टेक्स्ट का भाग या पूरा डॉक्युमेंट चुनें
अब मेन्यू बार में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें
अब ड्रॉपडाउन बॉक्स में वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करें
एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आपको वर्तमान चुनित और साथ ही पूरे डॉक्युमेंट की शब्द गिनती बताता है
यह आपके पूरे डॉक्युमेंट और साथ ही चुनित टेक्स्ट के पूरे अक्षरों का जोड़ भी दर्शाता है
वर्तनी जाँच स्वतः ही कर सकते हैं जब डॉक्युमेंट लिख रहे हों
टूलबार में ऑटोस्पेलचेक आइकन पर क्लिक करें
अब जब लेख लिख रहे हों यदि यहाँ कोई वर्तनी की गलती हो तब राइटर स्वतः ही शब्द को लाल रेखा से रेखांकित करके प्रदर्शित करता है
उदाहरणस्वरुप जब हम शब्द कैट को सी A आ T की तरह लिखते हैं और स्पेस बार दबाते हैं हम देखते हैं कि उसके नीचे एक रेखा प्रदर्शित होती है
किन्तु जब हम शब्द को सही करते हैं लाल रेखा गायब हो जाती है
अतः हम देखते हैं कि सभी संरूपणफॉर्मेटिंग ऑप्शन्स जिनकी हमनें पिछले ट्यूटोरियल्स में चर्चा की थी उन्हें हम सूचना पत्र में भी लागू कर सकते हैं
अब हम लिबर आफिस राइटर पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आते हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि लिबर ऑफिस राइटर में सूचना पत्रों को कैसे बनाएँ और कुछ कार्य जो उन पर कर सकते हैं कैसे करें
निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध विडियो को देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैन्डविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contactspoken tutorialorg पर संपर्क करें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद